यहाँं एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जो कांच का बना हुआ है दरवाजे में कोने में लकड़ी लगी हुई है जोकि भूरे रंग की दिखाई दे रही है ऊपर एक गोल सा बोर्ड लगा हुआ है।

ये एक सिनेमा घर दिखाई दे रहा है जोकि लाल और पिले रंग का बना हुआ है ऊपर से कइ आक्रित्यां और डिज़ाइने बनी हुई हैं।

यहाँ एक घर का दरवाजा दिखाई दे रहा है। एक जंगला भी दिखाई दे रहा है। मीटर लगा हुआ है। बाहर तार जा रहे हैं छत पर।

ये शटर लगा हुआ है। बगल वाली दुकान है जिसमे सफेद रंग का शटर लगा हुआ है। दुकान बंद है कुर्सी डली --

ये एक सिनेमा घर लग रहा है। ऊपर पोस्टर लगा हुआ है जिसमे एक औरत और आदमी की तस्वीर है।

बहुत सी लाइटें लग रही हैं। दीवार भी सफेद रंग की है। एसी लगे हुए हैं। परदे लगे हुए हैं नीले रंग के लोग कुर्सियों पे बै --

ये एक बड़ा-सा महल दिखाई दे रहा है। महल की गुबंदे कुछ सफेद रंग की है। महल लाल रंग का दिखाई दे रहा है।

औरत आदमी जाते हुऐ दिखायी दे रहे है। एक साइकिल खड़ी हुई है। एक आदमी फोन से फोटो खींच रहा है सामने की। सामने बहुत भीड़ हो रही है इस लिए --

यहाँ एक आदमी बर्जिश करता हुआ दिखायी दे रहा है आगे बाज़ू बर्जिश मशीन दिखायी दे रही।